यह एक फील्ड नजर आ रहा है। फील्ड के चोरो तरफ घर कुछ घर भी नजर हैं।

इनके हाथ में कुछ औजार नजर आ रही है ।

एक आदमी नीचे काम कर रहा है ।

लोहे का गेट भी लाल रंग का है यहाँ पर एक ताला लगा हुआ है अंदर में एक मूर्ति नजर आ रहा है।

आड़ा-वाड़ा भी है पीछे कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।

सामने एक कंकाल है वो दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर कुछ पानी नजर आ रहा है। पानी के उधर चबूतरा नजर आ रहा है जो सफेद रंग का है।

ऊपर में भी लाली गुब्बारा नजर आ रहा है ।

फील्ड मे छोटे-छोटे घास नजर आ रहे है जो हरे-भरे हैं।

इस थोड़ा सा दुरी पर बहुत से पेड़ भी लगे हुए है ।

कुछ के पेड़ भी लगे हुए है वो भी हरे-भरे है यहाँ पर कुछ घर नजर आ रहे है ।

सामने में एक सिधी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आए है।

ऊपर में सेल्लिंग फैन भी लग --

कुछ नेवी ब्लू कलर के हैं बाहर में एक गा --

ऊपर में करकट गिरा हुआ है ये आदमी हाफ टी-शर्ट हाफ पैंट हाफ टोपी पहना हुआ है।

यहाँ पे दो-दो बिल बना हुआ है समुद्र के बीचो-बीच बना हुआ है ।

उधर साइड में भी एक गाड़ी नीचे चला रहा है जो क्रीम कलर का है ऊपर में --